सामने मुझे एक पुल दिख रहा है जो कच्चा है जिसके पास में एक सूखा पेड़ का डं-डंडी दिख रही है।

जिसके सामने एक औरत बैठी हुई है जिसने गुलाबी साड़ी पहनी हुई है उसकी बॉर्डर जो है वो सुनहरी है उसके माथे पे एक सिंदूर लगा है।

एक फैन भी रखा हुआ है जो सफेद रंग का है।

ये एक कमरा है जिसमें एक अ स्ट्रेचर पड़ा हुआ है जिस पे काल काला चद्दर पड़ा हुआ है इस पे तकिया भी रखी हुई है।

यह एक अ पार्क है जिसपे चलने की जो फर्श है।

यहां की फर्श मटमैले रंग की है यहां पर एक प्लास्टिक की बाल्टी है जो काले रंग की केनल है।

और इनकी होंठ पे लाल रंग लगा हुआ है और माथे पर तिलक भी है।

जिस पर चाय कैफे लिखा हुआ है और चाय की फोटो भी बनी हुई --

सामने पानी दिख रहा है मुझे जो रोड पे भरा हुआ है।